यहाँ पे लोग घूमने आते है। यहाँ पे कुछ नाव भी चलती है इसका लोग आनंद लेते हैं। उन नावों पे चढ़ के डैम मे घूमते हैं।

घर के उपयोगी सामानों को खरीदते हैं राशन खरीदते हैं और तरह तरह के खाने के चीज़े खरीदते हैं।

और यह मांसाहारी जानवर है जो दूसरे जानवर को मार के खाता है।

इसे हम चिड़िया घरों मे देखते है।